यहां पे टेबल दिख सक देख सकते हो आकर--

यहा पे आप देख सकते हो जो एक--

पीले लाल नीले कलर के झंडे दिख रहे हैं।

और यहां पे बहुत सारे आदमी है ये--

लिखा हुआ है यहां पर आप देख--

बहुत सारे आदमी हैं वो बैठे हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो ये सम्राट समार्ट लाइब्रेरी लिखी हुई है संपर्क सूत्र लिखा हुआ समय आठ से--

यहां पर बजरंगगढ़ लिखा हुआ है।

और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास रखा हुआ हैं।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

ट्रेने खड़ी हुई है ये यहां पे ये आदमी दिख रहा है ये यहा --

यहां पे आप देख सकते हो ये

यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लड़की बैठी हुई हैं पूरी यहाँ पे लाईट ही लाइट लगी हुई हैं।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

लगे हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं यहां पे पेड़ों को--